यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है बैठने के लिए । डस्टबिन भी है कचरा डालने के लिए । पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं । बहुत हरा भरा --

और इसके बगल में घर है की बहुत बड़ा-बड़ा है अच्छा है।

यहाँ पे गाड़ी रिपेयरिंग भी किया जाता है।

यहाँ पे टमाटर खीरा बैंगन कद्दू --

यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें लगाए गए हैं अपने शरीर को फिट करने के लिए अच्छा है ये जिम ।

जो की काफी ज्यादा भीड़ है और इसका अगल-बगल में छोटा-मोटा दुकानें भी लगाया गया है और यहाँ पर एक एस.बी.आई. बैंक भी है।

यहाँ पे लहसून भी है प्याज है गाजर भी है।

इसमें फ़ोन पे का क्यू.आर. कोड लगा हुआ हैं ।